उसके पीछे हमें शिवजी की मूर्ति दिखाई दे रही है और उसका साइड पर एक और मूर्ति है।

इस तस्वीर में हम लोग को बहोत ज्यादा आदमी दिखाई दे रहे जो भी माउंटेन ट्रैकिंग के लिए आई है।

इस पिक्चर में हम लोग को एक जगह दिखाई दे रहा है जहां में एक ही साथ बहुत सारा मकई भी रखा गया है जो अभी अभी ही तोड़ा हुआ है।

इसका पीछे में हम लोग को बहुत ज्यादा सूखा पत्ता और लकड़ियां भी दिखाई दे रहा है।

समान में हमें एक टंगाई हुए एक टॉर्च भी दिखाई दे रही है।

इ पिक्चर में हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई दे रहा है।

टीना से ढका हुआ है और उसके किनारे पर और अलग सब्जी मंडी भी है।

इस तस्वीर पर हमें एक कार शोरूम दिखाई दे रही है जो पूरी तरीके से जिसको लाइट से ढकी हुई है वो भी ब्लू रंग के।

इसका कलर ब्राउन ब्लैक और वाइट है।

वो गेट ब्लू और व्हाइट चूने से सजाया गया है।

ये पिक्चर में हमें हरा भरा जंगल दिखाई दे रहा है।

कोने पर हम लोग को एक चेयर और एक टेबल दिखाई दे रहा है।

जमीन में हम लोग को दो लाइन दिखाई दे रहा है जो येलो कलर में है।

हर चीज अलग अलग एक बॉक्स में रखा गया है वो भी लाइन वाइज ।

इसका बाहर में बहुत सारा हरियाली पेड़ पौधा भी है।